इस दृश्य में गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि एक काले रंग के पत्थर से बनी हुई है।

दो तकिए दिख रहे है पीछे पर्दा लगा हुआ हैं जोकि मैरून कलर का हैं।

जोकि वर्ल्ड फेमस कुल्चे के लिए है।

यहां पर कुछ मैदान के जैसा दिख रहा है जहां पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं।

यहां पर कुछ मार्केट जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें एक --

जिम के बाहर ए_सी लगी हुई है जिसका रंग सफेद है।

जहां पर काफी अच्छी तरीके से बैठने की व्यवस्था दिखाई दे रही है।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

यहां पर कुछ शादी सामूहिक समारोह जैसा दृश्य प्रतीत हो रहा है।

जहां एक गौशाला जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं पीछे एक पेड़ दिख रहा है।

बाउंड्री हो रखी है एक हरे रंग का पेड़ दिख रहा है एक बाइक खड़ी है।

यह एक बैंक का नजारा है जहां सामने दिख रहा है जो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बरोड़ा --

बलून लगे हुए हैं नया स्टार्टअप है लोन वगैरह करवाते हैं एक कुर्सी दिख रही है बेंचिंग टेबल दिख रही है।